आस-पास बिल्डिंग भी बोहोत सारे रेड कलर की ब्लू कलर कीऔर एक ट्रैन भी खड़ी हुई है।

एक चप्पल की शॉप है और इसपे लिखा है इंडिया शूज स्टेशन रोड सीतामढ़ी।

इस पिक्चर में राफ्टिंग करते हुए कुछ लोग नजर आ रहे है जोकि दो-दो की जोड़ी बनाए हुए है सब रंग बिरंगी बोट दिख रही है।